यह एक मॉल की फोटो लग रही है।

वहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

कोई शॉप है जहां पर--

उम्म स्ट्रेचर रखे हुए हैं।

और रेलिंग्स भी लगी हुई है।

तालाब में पानी बोहोत सारा नहीं है।

और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कैफे का दृश्य है जहाँ पर चार स्टूल --

खूब सारी टेबल्स लगी हुई हैं।

सामने एक सिग्नल की फोटो --

यहाँ पर कुछ झूठी खाने की प्लेट --

उसने ब्लू कलर की पैंट और वाइट कलर की--

शादी रिसेप्शन का दृश्य है।

केक पर व्हाइट कलर से--

रेड कलर के हार्ट बने हुए--

मुर्गियाँ नीचे दिखाई दे रही है।